इसके अंदर काले वाले अंगूर रखे हुए नज़र आ रहे है और दुकान के ऊपर यह हरे अंगूर लाल संतरे और कुछ स कुछ कुछ तरबूज और उसके ऊपर केले रखे हुए नज़र आ रहे है।

ठेले का रंग नीला दिख रहा है और उसके ऊपर बहुत सी सेब एक के ऊपर जमे हुए नज़र आ रहे है सेबो का रंग लाल दिख रहा है और नीचे डब्बे में भी कुछ सेब नज़र आ रहे है और एक नीचे कपड़ा बिछा हुआ नज़र आ रहा है नीचे ज़मीन दिख रही है सामने बहुत सी पेंटिंग करी हुई दिख है।

एक हरे कलर की मस्जिद नज़र आ रही है जो की मेंहदी और डार्क ग्रीन कलर की नज़र आ रही है और उसके मीनारे पर एक एक चाँद जैसा बना हुआ नज़र आ रहा है।

निचे ग्रीन कलर के चाँद सूरज के पोस्टर बेनर्स लगे हुए नज़र आ रहे है और निचे एक पकड़ने वाले भी लगी हुई है और एक दिवार लगी हुई है जिसके ऊपर कोई पेंट करा गया नहीं और एक बल्ब दिख रहा है जो वाइट कलर का है।

जो की गोल्डनस कलर की दिख रही है और एक साइड में खिड़की है जो की जिस जिसकी जालीया ब्लैक कलर की बनी हुई है और बाहर गाड़िया खड़ी हुई है।

दिख रहा है जहाँ पर बिच में एक स्विमिंग पूल भी नज़र आ रहा है और उसमे बहुत सी स्लाइड भी लगी हुई नज़र आ रही है जिनमे एक स्लाइड ब्लैक कलर की और ब्लू कलर स्काई ब्लू कलर की और एक रेड एंड येलो कलर की दिख रही है और एक बॉल भी पड़ी हुई नज़र आ जो की येलो कलर की दिख रही है।

खुला मैदान नज़र आ रहा है जहाँ पर दो जानवर खड़े हुए नज़र आ रहे है उनमे से एक जानवर का रंग काला दिख रहा है और आसमान सा नीला और सफ़ेद दिख रहा है। और --